अ अ ये ब स्कूटी खड़ी है।

और ये बगल में मेडिकल स्टोर है यहां पर हर प्रकार का सामान काफी सस्ते में मिलता है।

उस पर ऑरेंज और येलो कलर किया हुआ हैं और बीच में एक रोड है इस ब्रिन के आगे काफी--

और अह पार्क बहुत सुंदर लग रहा है।

जो फोटो है इस ची में ये एक भजन आश्रम है।

इस पिक्चर में बोहत सुंदर सी सेनरी है।

और यहां पर एक सामने बर्फ गिरी हुई है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और ये एक--

और बोहोत इंजॉय कर रहे हैं जे बच्चे बहोत खुश हैं।

अ की जहां स्टैचू बने हुए है अलग हरे ऑरेंज --

कुरकुरे चिप्स रखे हुए हैं यहां बच्चे खूब एन्जॉय करते है इस शॉप में आकर ये बच--

ये बहुत सुंदर पार्क लग रहा है पार्क के बीच में एक रास्ता है जिसमें टाइले लगी हुई है लोग खूब सैर कर रहे हैं एंजॉय कर रहे --

अह बच्चे का समान रखा हुआ है साथ में एक बुजुर्ग खड़े हैं।

एक मार्केट की फोटो दिख रही है काफी बड़ी मार्केट है काफी अलग अलग तरह की दुकानें हैं यहां पर--

कुछ बाइक खड़ी है कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहां पर।

काफी बड़ी बिल्डिंग है ये सामने रोड क्रॉस करने पे छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

के आगे कुछ स्कूटर खड़े हैं का--